यहाँ पर मकान दिखाई दे रहा --

यहाँ पर तीन-मुहां सड़क दिखाई दे रहा है ये बहुत सारे वृक्ष भी दिख रहे हैं यहाँ आम का पेड़ है।